पीछे बहुत सारे हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

और पीछे कई सफेद रंग की बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सब्जी मंडी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।

और यहां तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में हमें एक पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे छोटी छोटी सी हरे रंग की घास लगी हुई है।

इस पिक्चर में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा--

जिनमें से कुछ लोग माइक में गाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक ब्लैक कलर का दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में एक बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में बहुत सारे हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

पीछे बहोत सारी बिल्डिंग्स भी बनी हुई है।

यहां बहोत सारे अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं।

यहां बहोत सारी सिप्स रखी हुई है।

इस पिक्चर में हमें बहोत सारी गर्ल्स योगा करती हुई दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी कुर्सी और मेजे रखी हुई हैं।

यहां पर पीले रंग के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

जिनमें से कुछ महिलाए कुछ पुरुष और कुछ बच्चे हैं।

राइट साइड में बहोत सारे हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

साइड में एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।

जैसे गुलाबी लाल और पीले कलर के फूल--

और यहां कई सारी वैन और ट्रक खड़े हुए हैं।